और कुर्सी दिख रही है एक और स्टेज पर और डी_जे वगैरा दिख रा--

आ जहां पर एक फोटो रखी हुई है और बाकी जो भी चीजे यूज होती--

और यहां पर कुछ कार्स वगैरह दिख रही हैं।

अ यह एक जमीन दीख रही है यहां पर कुछ जमीन से संबंधित कुछ काम वगैरह हो रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के ऊपर का टेरेस दिख रहा है।

और आसपास बहोत हरियाली जैसा दिख रहा है।

और कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुईं हैं।

अ जोकी एक बिल्डिंग है जिसमें खिड़कियाँ वगैरा लगी हुई है दरवाज़े वगैरा भी होंगे।